कुछ इसमें किसी चीज का जयंती मना रहे हैं और बड़ा सा एक बिल्डिंग है।

मॉल बहुत लम्बा-चौड़ा बहुत बड़ा है मॉल ।